पड़े हुए है और यहाँ पर एक ठो पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की हरा - हरा सा है।

उसका रंग सांवला सा दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ कुछ वो वाली मशीने दिखाई दे रही है।

ये सामने सब्जी मंडी दिखाई दे रही है टायर दिखाई दे रहा है उपर आसमान दिखाई दे रहा है बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर तीन मूर्तियाँ बनाई गई है सीता राम लक्ष्मण मैम मूर्तियों को बनाया गया है और मूर्तियों --

जैसा की मै यहाँ पे देख पा रही हु की मुझे यहाँ पर एक अअअअ आदमी देखाई दे रहा है जो की अपना फूल कोट में हैपहने हुए है।

यहाँ पर देख रहे है यहाँ पर एक पहाड़ी सा इलाका दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ हरे-हरे पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे है।